एक में प्याज़ लहसुन रखी हुई है और भी खाली डली रखी हुई हैं।

एक ट्रक दिखाई दे रहा है ट्रक के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि अपना सामान उठा रहा है।

इस चित्र में मुझे एक शादी हाल दिखाई दे रहा है शादी हाल के बाहर दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं और गाड़ी के सामने एक अ --

ईंटे डली हुईं हैं और इसके सामने एक लड़का दीवाल बना रहा हैं ईंटों के पर एक मटका रखा हुआ है उसके सामने--

कुछ फ्रेज दिखाई दे रहा है।

अलग अलग खिलाड़ी कपड़े पहने हुए हैं जबकि सामने एक कार रखी हुई है और वहां का रास्ता पक्का है।

इस चित्र में मुझे एक टेबल दिखाई दे रही है टेबल के ऊपर साय बनानी है कुछ सामान रखा हुआ है वहां पर--

इस अ अ चित्र में मुझे एक अ रूम दिखाई दे रहा है इस रूम के अंदर--

इस चित्र में मुझे लाइब्रेरी दिखाई दे रही है लाइब्रेरी रखी हुई है वहां पर टेबल रखी हुई है टेबल के आसपास जो रखी हुई है।

इस चित्र में मुझे एक जनरल स्टोर दिखाई दे रही है इस स्टोर में एक लड़का चेयर के ऊपर बैठा है।

जो कि पीले कलर से पुती हुई है।

इस चित्र में मुझे डांस क्लास दिखाई दे रही है उस डांस क्लास में चार लड़कियां डांस कर रही हैं और पीछे स्टूल रखा हुआ है स्टूल के ऊपर--

इस चित्र में मुझे एक सड़क दिखाई पक्की सड़क दिखाई दे रही है पक्की सड़क के सामने--

और दो लोहे के गेट लगे हुए हैं सामने एक बिल्डिंग बनी जो पीले--

एक नर्सरी दिखाई दे रही है उस नर्सरी में--

डब्बे अलग-अलग रखे हुए हैं नीचे।

एक्सरसाइज करने की कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ लोग यहां पर खड़े हुए हैं।

इस चित्र में मुझे मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद में जा नमाजें बिछी हुई है और लोग बैठ रहे बैठे हैं।

सामने साइड एक टेबल है कांच की और सामने से बैठा हुआ है।